और बहुत सारे इंसान और वाइट पंडाल भी हैं।

एक पार्क है जिसमें बहुत सारे झूले हैं।

जिसमें एक लड़का बाल कटवा ड़ा है।

और ऊपर एक काला कलर का टी_वी भी है।

इस तस्वीर में एक मॉल है।

जो एक औरत है ब्लू कलर की साड़ी पहनकर वो खाने खा रहे हैं और--

फोटा सा डब्बा भी नीचे जो ब्राउन कलर का है।

औड़ पिंक कलर का जो मस्त एक बच्चे का कपड़ा है।

इस तस्वीर में एक मॉल है जो बहुत बरा --

और इस मॉल का नाम भीटु है।

और इसके साइड में बिजली का खम्मा ह ।

जो बगल में बच्चे का ग्राउंड भी है उसमें कुछ बच्चे खेल भी रहे ।

जो इसमें बहुत सारे गायें हैं एक गाय जो है काली है।

इस तस्वीर में एक बहुत सुंदर--

जो बहुत ही हड़ियाली से भड़ी हुई है।

शो प्लांट नारियल का खजूर का पेड़ भी है।

और साइड में एक ग्रीन प्लांट है।

और उसका जो गैहला भी है ग्रीन --

मूर्ति स्टैचू है जो ये--

सब खाड़े हैं यहां पे और ये इसका क्लर है वाइट और ब्लैक में--

इस तस वीर में--

एक उसके सामने एक जनेटर है और तीन बाइक है उसमें एक स्कूटी भी है और एक --

घर के अंदर भी ब्लू कलर का गेट है।

और ब्लू कलर का बेंच --

इस तस्वीर में एक लड़का है जो ब्लू --

ब्लैक कॅप और उसके बगल में जो--

एक डैंस क्लास है जिसमें बहुत सारे लड़का और लड़कियां--

पार्क जैसा है जो बहुत सारे इंसान घूमते हैं।

मशीन ए हैं जो कि ब्लैक कलर की है।

और इसकी लाइट है वाइट --

कुंम्फू क्लास है जो कि बहुत सारे क्राटे सीख रहे हैं लड़के--

ताड़ी बिल्डिंग भी है।

इस तस वीर में--

एक रूम है जिसमें ए--

दो चेयर्स एक टेबल है।

बहुत सारे बाइक हैं और एक--

लड़का भी है जो कि माक्स लगाया हुआ--

पीले कलर की है और--

और बहुत साड़े यहां पे आदमी--

वाइट क्लर की कार है जो कि--

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत अच्छी है।

और बॉल है जो कि पीले कलर की है।

पिंक कलर की देवाले भी हैं।

और अन्वाड़ी जो ब्लैक वाइट में है।

सो प्लांट लगे हुए हैं जो कि ये--

जो बहुत हीऔड़ इस तस्वीर में--

वाइट कलर की कार है और--

चार पीले कुर्सी और दो टेबल ब्राउन्ड कलर की है।

बहुत ही सुंदर घर है।

कुर्सी है जो कि काले कलर की हैं।

और बहुत सारे कॉपी दिख रहे हैं।

और बहुत सारे खिरकी भी हैं और एक लड़की भी है।

अच्छे हैं छोटे गेट एक युकि ब्राउंड लड़की है।

इस तस वीर में एक--

पीले गेट से है और--

रेड कलर की कुछ देवाले हैं और यहां पे बहुत--

और दो आदमी हैं जो कि वाइट कलर की स्वेटर पहने हुए--

इस तस्वीर में एक कार है जो कि--

नोर यहां पे रेड ब्लैक जेब्डा क्रॉसिंग --

इस तस्वीर में एक मॉल है बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

इस तस्वीर में बहुत सारे--

पीले कलर की है और इसके आगे बहोत सारे शो प्लांट है और एक टॉवर भी है।

बिजली के ताड़े भी हैं।

इस तस्वीर में एक गार्डन है जिसमें बहुत ही सुंदर सो प्लांट फूल लगे हुए हैं।

और बहुत हरियाली भी है और एक ऊंची बिल्डिंग भी है।

जोकि एक बहुत सुंदर रूम है।

और तीन लाइट भी दिख रहे हैं।

पर्दे जो ब्लू कलर की--

इस तस वीर में एक बहुत ही सुंदर घर--

और यहां पे एक बहुत बड़ा कुआं भी है।

जो कि उसमें पानी नहीं दिख रहा।

और इसमें तीन लड़के हैं और--

कुछ टंगे हुए हैं जो कि पीले गुलाबी हैं।